और यहां पे नव भी खड़ी है।

यहां पे लाइट का बहोत अच्छा प्रबंध कर रखा है यहां पे ये पायदान डाल रखे हैं और यहां पे बैठने के लिए बेंच भी रखे हुए हैं।

यहां पे आप देख सकते हो ये पंखे लगे हुए हैं।

इन्होंने टोपियां भी पहेन रखी है।

साइकल पर बैठा हुआ है यहां पे--

और यहां पे साइकिल अच्छी अच्छी साइकिल दिख रही है।

यहाँ पे आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे--

एंड मैरिज पैलेस लिखा हुआ है।

कोई गाड़ी सफेद रंग की है कोई गाडी काले रंग की है कोई गाडी लाल रंग की है।

और वहां पे आप देख सकते हो पीछे हरियाली हरियाली दिख रही है।

यहां पे ये गेट लोहे का बना हुआ है और यहां पे देख सकते हो आप पैडी ये पैडी बना रखी है।

और यहां पे ये सफेद रंग की गाड़ी है जो खराब हो रही है।

और यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारी मछलीयां वछलीयां दिख रही हैं।